और यह कैफै के जो अंदर के जो पार्ट है सीलिंग दिख रहा है वाइट कलर का लाइट भी नजर आ रही है और जो एंटरेंस वो कांच का दिख रहा है।